लेकिन हमलोग जा कर देखेंगे और जा कर देख कर कुछ सामान हमलोग का पसंद आती हो आते होगा तो हमलोग ख़रीदे --